गार्डन है बच्चे लोग है लड़की है लड़का है झूला है।

ये पब्लिक ल लड़का लड़की बच्चे वच्चे--

चार आदमी हैं एक आदमी हैं।

शर्ट टी शर्ट वी शर्ट निकाल के कर नहा रहे हैं आदमी पब्लिक और बाजू में झाग झाग लग रहा है थोड़ा--

और चार पांच बिल्डिंग भी हैं।

लाल चकड़ी कलर का मट्टी मट्टी लगा हुआ है और सब कुछ अच्छा लग रहा है बिल्डिंग दरवाजा है और पीछे अच्छा पोस्टर लगा हुआ है।